ये एक बुक शॉप है इसके बाहर एक इसके बाहर कई सारे गाड़िया खड़ी है इसके बाहर कई सारे अंकल लोग खड़े हुए है जिस--

एक नर्स और एक वार्ड वार्ड मैन दिखाई दे रहा है।

एक अंकल अपनी किताबें ढूंढ रहे हैं एक भैया ग्राहकों को समान दे रहे हैं।

सारी आंटियां लोग बैठी है और दो आंटी लोग खड़ी है और एक अंकल खड़े है जो अपने बैग चे में से कुछ निकालते हुए नजर आ रहे है।

और एक आँटी बैठी हुई है जो मछली काट रही है यहां मछली जिंगा मछली जी क्या क्या है ।

ये एक मछली की दुकान दिख रही है। जहां पे बहुत सारे प्रकार की मछलियाँ है। यहां एक अंकल धोती पहने बैठे हुए है यह अपनी दुकान की निगरानी रख रहे हैं।